जहां पर हमें कुछ कैरेट्स दिखाई दे रही है और --

यहाँ पर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की हमें कि --

उपर हमें काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर हमें काफी ऊँचे-ऊँचे बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है झलकी --

कुछ लगी हुई रैलिंग्स दिखाई दे रही है ऊपर हमें एक हल्का-सा लाइट का वायर दिख --

पर पीछे हमें खड़ा हुआ चलता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक लगा हुआ बैनर दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर हमे लगा हुआ एक पोस्टर और उसका बना हुआ लोगो दिखाई दे --

इन दीवारों पर हमें कुछ काई जैसा दिखाई दे रहा है और खुला आसमान दिख रहा है।

यहाँ पर हमें एक स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें काफी सारे --

लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ बैग्स दिख रहे हैं।

जैसे जैसा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और कांच में --

दिखाई दे रही है जिसमें हमें दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और नाव को घेरे हैं।